रात में देखने के लिए लाइट लगाया गया है रोड के साइड साइड में।

जाम में फसा हुआ है इसीलिये इतना भीड़ है।

और ये पेड़ बहुत बड़ा-बड़ा हो चूका है कुछ हरा है तो कुछ सुख भी गया है।

बहुत बड़ा है लेकिन उतना काम कम्पलीट नहीं हो चुका है। इसके बाहर घास भी लगा हुआ है।

शरारत भी कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे बैठ कर के होमवर्क पूरा कर रहे हैं जब तक टीचर ना आये।

यहाँ एक घर में बहुत अच्छे से सजावट की गयी है। लग रहा है यहाँ शादी का माहौल है।

यहाँ एक बाल का नाई का दुकान है।

यहाँ एक कपड़े का छोटा सा दुकान है।